यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट या कैफे का लग रहा है।

इसमें एक पिलर दिखाई दे रहा है।

के किसी पार्क में तस्वीर दिया गया है।

और यह तस्वीर शाम के समय में लिया गया है।

इस फोटो को देखने से साफ पता चल रहा है।

और यह फोटो शाम के समय लिया गया था।

जो कि उसमें लोहे का ग्रिल लगा हुआ है।

और एक येलो कलर का शर्ट पहनकर उसमें जा रहा है।

इस तस्वीर को देखने से--

साफ पता चल रहा है कि यह किसी तालाब में है।

और एक आदमी है जो कि नाव पर बैठ के ट्रेवल कर रहा है।

उस छोर तक जा रहा है।

धार्मिक किराना दुकान है।

इसमें सभी पूजा पाठ का सामान मिलता है।

ये तस्वीर किसी बस स्टॉप पर का है।

और यह तस्वीर शाम के समय लिया गया है।

ताकि ढलता हुआ सूरज दिखाई दे--

और इस तस्वीर में एक मकान बन रहा है जिसका छत ढाला जा रहा है।

जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

इस तस्वीर को देखने से--

यह तस्वीर किसी दुकानदार ने ली है।

यह फोटो देखने से साफ पता लग रहा है कि यह किसी गैरेज का तस्वीर है।

क्या बोल रहा है।

ये कभी-कभी जानते हो ऐसी छोड़ देला पर ले ले रहा है।

ये तस्वीर किसी किराने स्टूर का है।

और एक टावर है।

इस तस्वीर में--

इस तस्वीर में साफ पता चल रहा है।

पानी की ओर देख रहा है।

और कुछ सोच रहा है।

सेम ऐसा ही लोकेशन मेरे घर के पास भी है।

कि वही लोकेशन है।

कि यह कोई किराना दुकान है।

खिलौना का सॉरी खिलौना का दुकान है जिसमें बहोत सारा --

जिसके सामने दो लोग हैं जो कि स्कूल के साइड जा रहे हैं।

और इसके सामने एक मिरर भी है।

इस तस्वीर को देखने से लग रहा है।

यह किसी स्टेडियम का तस्वीर है।

जहां तक कि मुझे लग रहा है।

के पटना का है।

यह एक--

जो कि यह होटल देखने से।

और यस पार्किंग मैं--

इसमें एक बॉक्सिंग वाला जो हैजो कि टांगा हुआ है।

और मेरा मन कर रहा हैकि दो-चार फेंट लगाए जाके।

की किसी मस्जिद के ऊपर छत पर का लिया गया पिक है।

पटना जक्शन के पास जो मस्जिद हैं।

मेन रोड का नहीं है यह किसी।

जो कि इसमें अभी सामने में दिख रहा है बहुत सारा पैर पूछने वाला।

यह मुझे लग रहा हैकि साइंस म्यूजियम का तस्वीर है।

लेकिन झूठो मुठ के खड़ा होकर हवा बना रहे हैं यह लोग।

कोई बात नहीं।

इसमें पानी है जो कि लग रहा है कि नाला है लेकिन काफी साफ पानी है और एक चेयर है जो कि बैठने वाला हैं।

किसी रेस्टोरेंट या कैफे का है।

एक सैलून में का तस्वीर है।

और ये तस्वीर काफी ही अच्छा है।

एक आदमी है जो कि खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा है।

यह फोटो एक मस्जिद का है।

जो महजिद महजिद के तरह है।